ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है नीचे रेत कच्ची सड़क दिखाई दे रही है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है पर्पल कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर स्लेटी कलर --

इस इमेज मे एक बड़ा कार्यालय दिखाई दे रहा है जो कृषि कार्यालय के नाम से जिसमे एक बैनर लगा हुआ है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे बड़ा हॉल नज़र आ रहा हैं एक कांच का गेट नज़र आ रहा हैं लॉक नज़र आ रहा हैं चेयर नज़र आ रही हैं।

इस इमेज मे फ्रूट मार्केट दिखाई दे रहा है ऑरेंज एप्पल दिखाई दे रहे हैं।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

इस इमेज में कुश कलर्स नजर आ रहे हैं।

चॉकलेटी कलर पर्पल कलर ग्रे कलर व्हाइट कलर कई कलर नजर आ रहे हैं गेट दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक बड़ा गा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ा टेंट लगा हुआ है रेड कलर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है।